इमेज मे एक गेट नजर आ रहा है जिसके पीछे मे एक इमारत नजर आ रही है गेट का एक हिस्सा खुला हुआ है एक बंद दिखाई दे रहा है।

और एक भोंगा लगा हुआ है ऊपर की और आसमान दिखाई दे रहा है आस-पास कुछ पौधे नजर आ रहे है और पीछे मे एक पौधे की डाल नजर आ रही है।

इस इमेज मे एक स्टॅचु नजर हा रहा है और सामने की और एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो स्टॅचु की ओर जाता हुआ--

पीछे में और ढेर सारी कारे नजर आ रही है यहाँ पर कुछ पेड और पौधे नजर आ रहे है और साईड में कुछ लोग बैठे हुए और खडे हुए दिखाई दे रहे है।

इमेज मे बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे जो काफी बड़े दिखाई दे रहे है।

उपर के साइड मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके चार शटर दिखाई दे रही है वह शटर पूरी तरीकेसे बंद दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में ढेर सारे फाउंटेन नजर आ रहे हैं और उसके सामने में एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो कपड़ों का दिखाई दे रहा है कुछ गमले लगे हुए हैं जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं।